चित्र मे भी एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है के अंदर कोई बिल्डिंग दिख रही है प्रवेशद्वार के सामने दी स सड़क दिख रही है।

भवन पर पीला रंग दिख रहा है जमीन पर भी पीला रंग दिख रहा है।

सफ़ेद खंबा दिख रहा है आस पास लंबे लंबे पेड़ दिख रहे है।

मे दुकान से बाहर का दृश्य दिख रहा है शटर दिख रहा है जो खुला हुआ है।